बहुत बड़ा रूम हैं बहुत बड़ा शटर का--

गोलाई है और दो आदमी प्री--

और थोड़ा हॉल है यहाँ पर किरा।

कुछ लोग जिम के लिए आते हैं और।

जा रहा है और यहां पर--

और बहुत सारी टेबल कुर्सी हैं और।

हर एक प्रकार की यहां पर दवा रखी है।

दो पेड़ दिख रहे हैं आजु बाजू में।